यहाँ पर लोग अपने नए-नए कपड़े स्त्री करवाते हैं।

यह एक पार्क है जहां पर पट्टियां बनी हुई हैं बच्‍चों के लिए और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर बहोत ही सारे व्रक्क्ष लगे हुए हैं।

यहाँ पर कंट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर दो पिल्लर खड़े हुए हैं बहुत सारी मिट्टी खुदी पड़ी हुई है और तीन मजदूर यहाँ पे काम भी कर रहें हैं।

यह ब्यूटी पार्लर है ब्यूटी पार्लर एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उपचार प्रदान करता है।